सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिखाई दे रहा--

सामने इस चित्र में मुझे एक बहुत बड़ा सा सालोंन दिखाई--

जहां पीछे की तरफ एक पीला--

और सामने की तरफ एक ट्रक दिखाई दे रहा है यहां पर एक आदमी ट्रक से--

जहां सामने की तरफ मुझे--